बगल में एगो मोमबत्ती बैरेत हेय एगो टेबुल हेय एगो बुद्ध भगवान के ऊपर पीयर मुकुट पिहिन्ले।

एगो स्कूल हई एक दू तीन चार तल्ला हइ रूम हय एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो खिरकी हई एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो सातगो एमे ग्रिल लागल हई।